उ वो पकड़ा हुआ है कंगा एक चेयर है उसके गले में एक कपडा बंधा हुआ है उसके बाद में इसकी साइड में एक ओर बच्चा बैठा हुआ है ब्लैक कलर की चेयर है एक फोटो लगा है पीछे लाइट की रोशनी आ रही है।

लड़का पैर अपना ऊपर उठाया हुआ है एक जमीन पर रखा है थोड़ा सा पानी पड़ा है साइड मे हाथ मे कलावा पहना हुआ है एक हाथ मे घड़ी पहना है चश्मा लगाया हुआ है।

बड़ी अजीब किस्म की मछली है लोग फ़ोटो ले रहें हैं उसका वे एक थेले पे रखी हुई है साइड मे ताला डाला जंजीरों से बंधी हुई है ।

नीचे जमीन पर ता मार्बलस लगे हुए है आस पास एक कार्पेट बिछा हुआ है एक माइक रखा हुआ है नीचे एक ग्रीन एक रेड कलर के कारपेट बिछें है नीचे लोग फोटो ले रहें हैं एक लाइन मैं औरतें बैठी एक आदमी बैठें हैं और--

एक घर टाइप बना है लकड़ियों का उसपे ट्यूब लगे हुए हैं मल्टीकलर के साइड में एक पिक्चर बनी है जिपली लिखा है उसके उपर तार लगे हैं बोहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं और ट्री है साइडो में नीचे के तरफ पहाड़ --

हरे हरे से पत्ते पड़े हुए हैं ऊपर की तरफ वाले पेड़ लगे हुए हैं एक पतला सा पेड़ लगा है जणें नीचे की तरफ गुलाबी गुलाबी --

इसे खेत है खेत में एक बकरी गाय खड़ी हुई है साइड में एक आदमी खड़ा है एक बोरी पड़ी है एक खकड़ी ये ककड़ी एक दो हैं के पीछे एक ककड़ी है हलसी सी डंडी निकली हुई है अगा खेत है मिट्टी-मिट्टी हो रही है।